बहुत ही अच्छा रूम है लाइट लगे हुए हैं।

जो कि वो अपनी बॉडी दिखा रहा है यहाँ व्हीलर का एक्सरसाइज करने आता है ।

हां एक बिल्डिंग है बहुत सारे फोर व्हीलर्स है।